हेलो गाइस यहां पर देख सकते हैं पार्क है बहुत शानदार जो है यहां पर पेड़ भी है यहां पर बहुत सारे पेड़ भी हैं यहां पर कुछ जानवर लोग भी चल रहे हैं।

हेलो गाइस आप देख सकते हैं बहुत तेज लाइट जल रहा है यहाँ पर सकता है वो चीज़ है यहाँ पर --

यहाँ पर देख सकते हैं बहोत ही शानदार जगह हैं आप देख सकते हो कितना शानदार जगह हैं यहाँ पर लगता हैं।

यहाँ पर देख सकते हो कितना ही शानदार जगह है यहाँ पर पानी भी है दो ठो तालाब बहुत ही शानदार जगह है घर भी हैं बहोत ही शानदार जगह हैं पेड़ उड़--

बहुत ही शानदार जगह है यहां पर और यहां बहुत ही अच्छी जगह है और यहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है आप देख सकते हैं कितना अच्छी जगह है यहां पर सिरमेंट का बनाया गया पूरी तरह से इसको बहुत ही शानदार जगह हैं।